गेट और एक पंखा दिखाई दे रहा है एक घड़ी भी दिखाई दे रही है और उसके पास मे कोई हॉटेल भी दिखाई दे रही है।

और दो स्ट्याचू नज़र आ रहे है जिसमे एक स्ट्याचू ने हम्म पिंक कलर की गाउन पहन रखी है और एक सामने एक लड़के का स्ट्याचू है जिसने शर्ट पहन रखी है।

यहा पे तीन अ स्टूल रखे हुए है और एक पोस्टर में एक लड़की खडी हुई नजर आ रही है जिसने पीले कलर के कपड़े और सफ़ेद कलर की लेगी पहन रखी है।

मंदिर है जो पीले और ऑरेंज कलर रंग का है और उसमे एक झंडा लगा रखा है और तोड़ी सी पास मे एक नीले कलर की टंकी भी दिखाई दे रही है।

कलर का घर है और उसके पास मे एक नीम का पेड़ है और उधर पे एक झूला है झूला लोहे का है लोहे की झूले पे पीले कलर पूता हुआ है।

काल मे माताजी का फ़ेस बना हुआ है और उसके पास मे हरे और नीले कलर की चूड़ीया एक डंडी पे टगी हुई है।